बनाया होगा। ये सीनरी मे कलर संयोजन बहोत अच्छा है। ये बहोत आकर्षक --

यहाँ पर एक व्यक्ति कार की डेंटिंग को सुधार रहा है वो उसको ठीक करके उसपे पेंट करने का करेगा उसके पास में उसका कार्य को करने के लिए जरूरी उपकरण भी रखा रखा हुआ है।

यह किसी सरकारी दफ्तर का कार्यालय दिखाई दे रहा है जहां पे एक टेबल लगी हुई है जिसके का एक तरफ एक अधिकारी बैठा है।

उसके बगल में एक पेड़ लगा है और दूर भी हमें एक बनता हुआ मकान दिखाई दे रहा है।